यह एक गुब्बारा हैं जो बोहोत सारा गुब्बारा यहां पै और इस गुब्बारा उ सजाया जा रहा है बोहोत सारे लोग भी आए हुए हैं बोहोत सारा गुब्बारा हैं।

और ये रात का फोटो लिया गया हैं बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा हैं हमारा समस्तीपूर का स्टैशन और बहुत ही अच्छा लग रहा हैं बहुत ही बड़ा स्टैशन हैं ये |

उसके भी अलावा और भी कुछ सारे पेड़-पौधे हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे है ये हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

इसके अलावा इधर-उधर भी बहुत सारा टैम्पू लगा हुआ है।